पे वुडन कलर की फ्लोरिंग हो रखी है सामने की तरफ एक महिला ने हरे रंग की साड़ी पहेन रखी है।

वे उनके गले में फूलों की माला पड़ी हुई है।

बहुत सारी किताबो का भंडार लगा हुआ है।

दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक कच्ची दीवार है।

मैं पीछे की तरफ डिब्बा व है कुर्सी का साइड में एक चप्पल रखी हुई है।

दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक पुरुष खड़ा हुआ है जिससे मास्क लगा रखा है उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसका नाम स्नैक बार है।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि कई सारी साइकिले जोकि जमीन पर खड़ी हुई हैं।

गाड़ियों का रंग सफेद दिखाई पड़ता है।

और सामने की तरफ एक दीवार है उसका रंग लाल है।